और कुछ ऊपर लगी हुई है और लाइट्स है।

तीन चार बाइक लगी है एक साइकिल लगी है और उसके ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है।